जोकि बहु दिखने में बहुत ही सुंदर नजर आ रहा हैं ।

कलर है बहुत ही पिला कलर भी देखने के लिए मिल रहा है।